कांटेदार पेड़ है और साइड में दूब लगी हुई है और बाहर की तरफ से यहां पर बाउंड्री है और यहाँ पर टाइलें भी बीड़ी हुई है।

उदर की तरफ से भी पैडी है इसपर एक कृष्ण जी का फ़ोटो है दो तोते साइड में है और साइड में घड़े के अंदर फुलवारी का चित्र बनाया हुआ है।

ये रेड मिलक शेक है जो की लाल कलर का है और मिट्ठा होता है ये एक होटल के अंदर की फोटो है।

ये एक एटीएम है केनरा बैंक सीधी गेट का है जिसमें साइड में एटीएम है।

और में लोहे के बड़े-बड़े सरिया दिए गए हैं और यहां पर पता नहीं क्या बन रहा है बहुत सारे लोग इसके रिपेयरिंग के लिए सीमेंट का लगा रहे हैं।